ये एक दुकान है जहां पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है।

साबुन कुछ चीजें टगी हुई दिख रही है कॉर्टून में भी थोड़ी बहुत चीजें हैं।

सलाइड्स है बलून की डाइनिंग टेबल के चारों तरफ।

ये ए फोटो में रोड साइड एरिया है।

इधर बहुत सारी चीजें एवेलेबल है।

कलर क्रीम है ट्रिक के खम्बे दिख रहे हैं।

सब कपड़े बॉक्स में है एंट्रेंस पर डमी को कपड़े पहन कर खड़ा किया गया है बच्चों के कपड़े भी दिख रहे हैं।

कुछ बुक को यहां ऊपर टंगाया गया है दुकान में कलर्स पेंस कलर पेपर्स और भी बहुत चीजें अवेलेबल है।

ये पीछे आप देख सकते हैं बैनर पर एम_ए --

जे ओर राम किसान सेवा केंद्र लिखा हुआ है।

यहां पर फ्रिज वॉशिंग मशीन वगैरह मिलती है।

बहुत सारे झाड़ दिख रहे हैं कलर कलर की बिल्डिंग्स है सभी बिल्डिंग में खिड़कियाँ और दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग्स के ऊपर पानी की टाँकी दिखाई दे रही है बहुत सारे वायर्स भी दिख रहे हैं।

दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरह की लाइटिंग्स हैं।

है एक आदमी बैठा हुआ है काउंटर पर --

देख सकते हैं छोटी सी दुकान है मॉल के जैसी --

छोटी सी दुकान है आप देख सकते हैं बहुत से शेल्फ हैं इन शेल्फ में --

बिस्किट्स पास्ता मैगी के पैकेट्स शैंपू के बॉटल्स हारपिक फिनाइल डेटोल --

ये एक चश्मे की दुकान है जहाँ पर शेल्फ में हर अलग अलग किस्म के चश्मे दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पर पोस्टर्स लगे हुए हैं इंग्लिश में बैनर पर लिखा हुआ है।

ये फोटो में हम देख सकते हैं एक व्हाईट कलर की बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

इसके चारों तरफ गमले रखे हुए दिख रहे हैं।

प्याज आलू पत्तागोभी भिंडी --

भी रखा हुआ है केले टंगे हुए दिख रहे हैं।

यहाँ पर एक साइकिल रिक्शा है के बाजू एक लड़का लड़की बैग --

पूरे चार लड़के दिखाई दे रहे हैं दुकान में दीवार फटी हुई दिख रही है।

नीचे पानी का डब्बा रखा हुआ है टेबल --

कचरे का डब्बा दिखाई दे रहा है बहुत सारी एल_ई_डी लाइट्स लगी हुई है।

यहाँ पर स्टेज पर बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं।

वर्ल्ड स्कूल बच्चे स्टेज पर लेटे हुए हैं और कुछ बच्चे खड़े हुए हैं।

बैकग्राउंड में फ्लावर से डेकोरेशन की गई है।

यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे पानी में खेल रहे हैं।

पूल में बहुत सारा पानी है बहुत बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं।

यहाँ दीवार पर बच्चों की पेंटिंग बनी हुई दिख रही है।

ये एक बहुत बड़ा मॉल है जिसका नाम मिटू है।

वी_टू का फूल फॉर्म वैल्यू एण्ड वेराइटी है।

बहोत सारे बैनर लगे हुए हैं इस मॉल के अंदर बहुत --

कपड़े बड़ों के कपड़े बैग्स --

स्कूल है जहाँ पर बच्चे एक्टिविटीज कर रहे हैं।

उनके पीछे बहुत बड़े बड़े खिड़कियाँ दिख रही हैं भी बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है।

बाहर एंट्रेंस पर बहोत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

अंदर स्कूल के बहुत सारे क्लासरूम्स दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी दुकान के अंदर एंटर कर रहा है।

लाइट के बड़े बड़े खम्मे दिखाई दे रहे हैं।

तीन लाइन से दुकानें हैं उस पर वैक्स पूल का टैग लगा हुआ है दुकान के ऊपर बैनर है जिस पर शिवा मोटर्स लिखा हुआ है।

ग्लू के बोटल्स दिखाई दे रहे हैं एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ पर बंडल में रखी हुई दिखाई दे रही है या --

पि पेट्रोल पंप का एरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती है।

पेट्रोल डालने की मशीन के पास अ आदमी बैठे हुए दिख रहे हैं पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है बहुत सारे झाड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये लोग कुछ बना रहे हैं तीन लोग यूनिफॉर्म में --

झाड़ के नीचे यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है।

गुब्बारों से सजाया गया है इस दुकान को इस आदमी के पीछे एक रेड कलर की कुर्सी है।

इनके पीछे नॉर्मल चेयर्स रखे हुए हैं।

कारपेट डाला हुआ है बैकग्राउंड में खाने के बहुत से डिशेस रखे हुए हैं।

इस नदी में बहुत से नाव दिखाई दे रहे हैं ये लोग अलग अलग नाव में सवार हुए हैं।

बहुत सारे बच्चे नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं।